यहां पर एक बूफे लगा हुआ है एक बूफे टाइप का काउंटर बना हुआ है जहां पर अ ब्रेकफास्ट लगा हुआ है शायद क्योंकि यहां पर--

पुराना एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है बहुत टंगा हुआ है पोस्ट ऑफिस का--

यहां पर एक पीछे लाल रंग की बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है सामने भी गेट दिख रहा है के पीछे कुछ--

ये एक खाली सा एरिया दिख रहा है सामने में दो गाड़ियां दिख रही है और पीछे का बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है और बिल्डिंग पे--

यहां कुछ कुछ मजदूर दिख रहे है और बहुत सारे बास नीचे गिरे हुए है।

अ आसपास में बहुत सारे प्लांट दिख रहे हैं छोटे-छोटे बहुत सारे पौधे लगे हुए पॉट पर।

अ यहां पर बड़े-बड़े अ अपत्थर दिख रहे हैं और एक आदमी का जूता दिख रहा है।

ये अ एक लंबा सा बिल्डिंग अ सामने में दिख रहा है बड़ा सा अपार्टमेंट टाइप का अ जहां पर बहुत सारी फ्लैट --

यहां पर सामने में एक अ नदी टाइप का दिख रहा है मतलब छन्ना टाइप का है ऊपर से जो पानी है बहते हुए आ रहा है और--

जो कि ठ ठंड का कपड़ा पहना हुआ है ऐसा लग रहा है कि ये कोई ठंडा कोई जगह है।